कुछ और नीचे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे है पीछे में कुछ लोहे के रोड्स दिखाई दे रहे है और ऊपर हमें लाइट्स के वायर और लाइट्स भी दिख रही हैं ।

पत्थर से टकरा कर और यहाँ का पानी हमे दुध जैसा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे कुछ--

और सेफ पोजिशंस में लेटे हुए दिखाई दे रहे है जो हमे योगा करते हुए दिखाई दे रहे है और कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है।

के बाहर हमे कुछ खम्भे और जनीश की बनी हुई बाउंड्री दिखाई दे रही है और यहाँ पर बिजली का एक खम्भा और उसमे से गई हुई --

खड़ा हुआ एक बड़ा- सा ट्रक दिखाई दे रहा है ट्रक के गेट पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है और जलती हुई लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं ।

लकड़ी लगे हुए भी कुछ दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमें कई सारे जलती हुई लाइट्स और घड़ी भी दिखाई दे रही हैं ।

लोहे की बिछी हुई झाल दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक बाल्टी कुछ बाल्टियाँ भी दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है और एक टी_वी का --

यहाँ पर हमे एक महिंद्रा टेक्टर दिखाई दे रही है। जिसमे से हमे टेक्टर का इंजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर--

यहाँ पर हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है इस पेड़ पर हमें कुछ ऊपर- नीचे सी बनी हुई कुछ चीज़ दिखाई दे रही है जो हमें आँखों सा प्रतीत हो रहा है और यहाँ पर एक--